ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लॅक व्हाइट और यहाँएक रस्सी है जो इसमे लगी हुई हैं क्रीम कलर का भुसा भी रख हुआ है और ये खिड़की दिख रही होगी यहा भी बहुत सारा भूसा रखा हुआ हैं।

ये लोग देख रहे है हात मिला रहे है और ब्रेक डांस भी है और-- आनेवाला है।

और ये कांच वाली अलमारी खिड़कियां बाजू मे भी शट्टर है।

ये ख्रिश्चन लोग का एरो देख रहे है अच्छी लाइट जल राही है और बलून्स भी लागे हुये है मस्त वाईट ब्लू और यहाँ बहुत सारी जनता भी देख रहे होंगे आप।